सा लग रहा है जैसे इसे सोनी --

पानी भरा हुआ है नदी में।

काफी लाटें लगी हुई है पेड़े खड़े हुए हैं घर बने हुए हैं काफी अच्छी लग रही है काफी अच्छी तू भी लग रही है।

यहाँ पर एक बड़ी सी दूकान स्टूडियो दिख रहा है जो कि काफी बड़ा है जो कि लक्ष्मी कम्युनिकेशन है।

सामने बहोत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।